इस ग्राउंड के अंदर बहोत सारे लोहे कि चीजे पड़ी हैं बच्चों के खेलने कूदने के लिए ये एक नेम ऑफ वर्क ऐडवेंचर पार्क हैं।

सोफे पड़े है सफेद कलर की कुर्सिया पड़ी है मां सरस्वती की तस्वीर पड़ी है ऊपर लाइट लगी हुई है।

यहां पर बहुत ज्यादा लोग खड़े हैं इधर उधर आ रहे हैं जा रहे हैं ये नागौर का किला है।

इस फोटो में एक बहोत बड़ा घर या मंदिर बना हुआ है।

इस फोटो में तीन चार लड़के हैं जो सेम कलर के कपड़े पहने हुए हैं और नृत्य डांस कर रही है।

यहां पर बहुत तरह के तरह तरह की खिलौने पड़े हैं छोटे छोटे गमले पड़े हैं गमलों के ऊपर --

ऊपर पंखे लगे हुए है दुकान के अंदर है नीले और सफेद कलर के बहोत सारे गुब्बारे लगे हुए हैं।

इस ग्राउंड के अंदर बहोत सारी लड़कियां और लड़के हैं जो की एन_सी_सी की तैयारी कर रहे हैं सबके यूनिफार्म पहना हुआ है।

यह एक बहोत ही बड़ा सा मंदिर है इसके अंदर दो ना वह नावों को आदमी आगे पीछे ले जा रहा है।

नीचे दरी बिछाई हुई है रेड कलर की एक आदमी के हाथ में फोन है।

बहोत सारे आदमी और बहोत सारी महिलाएं खड़ी हैं।

यहां पर बहोत सारे कारीगर खड़े हैं सबकी अलग अलग है बजरी लेके ऊपर चढ़ रहे हैं।

कुछ मजदूर लगे हुए हैं कच्ची ईंटें पड़ी है।